नमस्कार दोस्तों plotting data पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगेः
सूची के स्क्वेर elementwise क्रियान्वित करना
data points प्लॉट करना और errorbars प्लॉट करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
python 343
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि
plots इंटरैक्टिव रूप से उपयोग कैसे करें
plot कैसे संजोएं
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
pylab पैकेज आरंभ करें
सामान्य pendulum से संबंधित डेटा प्लॉट करने के लिए एक उदाहरण देखें
सामान्य pendulum के लिए l time t के square के सीधे आनुपातिक है
प्लॉट करने के लिए यहाँ दिखाए गए डेटा का उपयोग करें
पहले l और t वेल्यूज से आरंभ करें
हम उन्हें वेल्यूज के क्रम के रूप में सूत्रपात करेंगे इसे list भी कहा जाता है
टाइप करें l equal to square brackets में values एंटर दबाएं
t equal to square brackets में values एंटर दबाएं
अब हम square फंक्शन का उपयोग करके t का square प्राप्त करेंगे
टाइप करें tsquare=square parentheses में t और एंटर दबाएं
अब टाइप करें tsquare और एंटर दबाएं
हम array tsquare की वेल्यज देखते हैं
अब l versus t square प्लॉट करने के लिए हम टाइप करेंगे
हम आवश्यक प्लॉट देखते हैं
आप filled circles के लिए o निर्दिष्ट कर सकते हैं
इसके लिए पहले प्लॉट का साफ करें
अतः प्लॉट अब साफ हो गया है
अब टाइप करें
हम फिल्ड सर्कल के साथ प्लॉट देखते हैं
विडियो रोकें इस अध्याय को हल करने का प्रयास करें और पुनः विडियो चलाएं
प्लॉट करने के लिए यहाँ दिए गए एरर डेटा का उपयोग करें
हम समान तरीके से sequence values फिर से आरंभ करेंगे जैसे हमने l और t के लिए किया
अतः टाइप करें delta underscore l equal to square bracket में values और एंटर दबाएं
delta underscore t square bracket में values और एंटर दबाएं
अब एक एरर बार के साथ l versus t square को प्लॉट करने के लिए हम फंक्शन errorbar का उपयोग करेंगे
अतः टाइप करें errorbar parentheses में l comma tsquare comma xerr equalto delta underscore l comma y underscore err equalto delta underscore t comma fmt equal to within single quotes bo
हम प्लॉट l versus t square एक एरर बार के साथ देखते हैं
अब errorbar के प्रलेखीकरण का उपयोग करके errorbar के अन्य ऑप्शन्स का पता लगा सकते हैं
विडियो रोकें इस अध्याय को हल करने का प्रयास करें और फिर विडियो पुनः चलाएं
small dots के साथ दिए गए experimental data को प्लॉट करें
यहाँ प्लॉट करने के लिए दिए गए डेटा का उपयोग करें
this brings us to the end of this tutorial in this tutorial we have learned to
square फंक्शन का उपयोग करके elementwise squaring क्रियान्वित करना
प्लॉट करने के लिए विभिन्न उपलब्ध ऑप्शन्स का उपयोग करना जैसे dots lines आदि
experimental data प्लॉट करना ऐसे ही हम errorbar फंक्शन का उपयोग करके एरर भी दर्शा सकते हैं
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
निम्न क्रम का square करें distance underscore values equal to within square brackets 21 comma 46 comma 872 comma 903
red pluses में l versus t को प्लॉट करें
और उत्तर हैं वेल्यूज के क्रम को स्क्वेर करने के लिए हम square फंक्शन का उपयोग करते हैं
अतः square parentheses में distance underscore values
दूसरे प्रश्न का उत्तर है
अतः plot parentheses में l comma t comma single quotes में r plus रेड pluses के लिए
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद